एटीएम का गेट लाल रंग का है। बाजू से एक चैनल गेट भी लगा हुआ है। उसपर एक--

रखा हुआ है और सामने कुछ कांच के गेट भी लखे हुएं हैं। बाजु से एक काले रंग की कुर्सी --

अ पीले रंग की चुन्नी डाली हुई है।

खड़ी हुई है और दो तीन ब्रेन्च भी रख--